का टाइम है इधर भाई साहब खड़े हैं।

बाई-बाइक एक आदमी बाइक चला रहा है कर रहा है यी सब का।

ये किसी स्कूल में योगासन चल रहा है।

यह बहुत सारे फूल के पौधे हैं जिसमें सब अलग-अलग कलर है।

एक बिल्डिंग है जिसमें नीचे टायर लगी हुई हैं व्हाइट कलर की --

बहोत लंबी बिल्डिंग है। इधर-उधर दोनो साइड बिल्डिंग है। वो बीच में कांच का कुछ लगा हुआ है वगैरह।

और पीछे से बहुत लंबी एक पुल गई हुई है। रेलवे के लिए और उसके पास में सड़क गई हुई है।